बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

पुस्तके रखी है बुक्स रखे हैं ।

और एक आम का पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक कार दिखाई दे रही है जो कि व्हाइट कलर की है औरो एक घर है। घर पर --

कुर्सियां हैं जो कि रेड कलर की हैं और एक लड़का है जो कि बै जो की बैठा है और एक खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहनी है।

एक आदमी है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है।

और साइड में और एक बहुत बड़ीं ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है।